यहां का मेन गेट ब्लैक कलर का है।

यह एक गांव के इस तरफ का हॉस्पिटल है।

यह एक ए_टी_एम मशीन की दुकान हैं।

यहां कुछ लोग अंदर खड़े हैं।

यहां बहोत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां एक इंजेशन प्वाइंटर रखा हुआ है यहां एक फ्रिज रखा हुआ है और यहां मेडिकल का कोई सामान भी रखा हुआ है।

यहां सभी हेयर प्रॉब्लम्स क्लियर होती है।

इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्री हो रही है।

यहां अनेक प्रकार के व्यंजन मिलते हैं।